यहां पे बहुत सारे चेयर भी रखी हुई है यहां पे गार्डन भी नजर आ रहा है यहां पे फ्लैग भी नजर आ रहा है।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

यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पे नीला बादल भी छाया हुआ है।